मुझे एक बड़ी सी सुंदर सी जेनरल स्टोर की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें तकली भी रखी हुई है भी रखे हुए हैं इसमें--

बड़ी सी पुरानि सी दिखाई दे रही है एक गेट भी दिखाई दे रहा है परदे भी नज़र आ रहे है।

जो की फट्टे हुए पुराने से कपड़े से लगे हुए है ऐसा लगरा है उसके उपर एक टिन सेड ऐसा लगरा है बस आर भड़ास के लिए लगा हुआ है खाली--

भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है मंदिर में सभी बोहोत अच्छी तरीकेसे डेकोरेशन बोहोत सारे घंटे भी लगे हुए है सभी घंटी बोहोत मस्त तरीकेसे गोल्डन कलरके --

मुझे एक सुन्दर सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहा पर के केबिन बने हुए है उपर --

यहाँ मुझे एक सुंदर सी बिल्डिंग नज़र आरही है जो की कार पिले कलर से पेंट है यहाँ पर कुछ लड़--

इस दुकान में छोटी सी भगवान् जी की मूर्ति में ताज पहन रखी हुई है भगवान जी की तस्वीर रखी हुई है भगवान् जी के ऐसा लग रहा है जैसा राम जी का तस्वीर लगा हुआ है सॉस उसमे परदा भी लगा हुआ है लाल कलर से--

एक रोड भी दिखाई दे रहा है जिसमे सच लगे हुए है चार्ज चार्ज करने के लिए --

मुझे यहा छोटी सी दूकान दिखाई दे रही है जिसपे बोहोत सारे तेल ही तेल के डब्बे दिखाई देरे है जिसमे तेल भरा हुआ है कुछ डब्बो में कुछ न कुछ--

कुछ नज़र आ रहे है कुछ साबुन दिखाई दे रहे है कुछ मिर्ची के पैकेट लग रहे है कुछ आचार के पैकेट दिखाई दे रहे है सभी तरीकेसे गुल्ला भी नज़र आ रहा है मेरेको तो बड़ा--

उजे यहाँ पे एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है इस फैक्ट्री में मुह्जे बोहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है जो की --

किसी पे तीन सौ पछत्तर किसी पे तीन सौ पेतीस लिखा हुआ है किसी पे नो तीन सौ निन्यानवे ली--

यहां एक छोटा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पे सामान बहुत अच्छे तरीके से जमा हुआ है सभी बोतलों में कुछ सामान भरा हुआ है।

डिब्बे में दिखाई दे रही है कुछ ऐसे सामान ऐसा लग रहा है फैला फूहड़ का सामान डिब्बों के अंदर भरा हुआ है क्या सामान भरा है ये तो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ --

सामान जो लाइट कलर का यूज होता है सभी समान यहां पर बिचता हुआ नज़र--

ए चोटी सी दुकान दिखाई दे रही है कुछ यहां पर फूलों के का सामान नजर आता--

लग रहा है यह बॉक्स भी छुपा हुआ है एक बॉक्स पे पिलर छुपा हुआ है एक पे माउस छुपा हुआ है और कुछ असली--

मुझे यहाँ एक छोटी सुंदरसी सड़क नजर आ रही है सड़क के बाद मोटर दो गाड़ी दिखाई नजर आ रही है और बगलसे देखिये यहाँ पेढ पौदे भी दिखाई दे रहे है बड़े बड़े च --

तारो के टाइप्स के भी पेड़ पोधे लगे हुए है मस्ट धुप सी निकली हुई है।

ये यहाँ एक खंबा दिखाई देर रहा है यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे --

ओ उसको पुरस्कार देते हुए एक लड़का जो कैमरा लखा है उसने आपने गले को कैमरा खींच रहा है फोटो खींच रहा है दोनों के और उसके ओ पीछे एक --

ये मतलब बहोत सारी सुंदर सी एक बिल्डिंग में दिखाई दे रही है जोकि सफेद कलर से पेंट है खजूर के पेड़ लगे हुए हैं बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे मेरे को नजर आ रहे हैं और--

पानी की बोतले भी रखी हुई है जिसमे पानी भरा हुआ है निचे कार्टून रखा हुआ है खुल्ला हुआ रखा --

मुझे यहां पर एक कमरा दिखाई दे रा है इसके ऊपर रेस्टुरेंट राजस्थान होटल का कम बोर्ड नजर आ रा है उसपे लिखा हुआ है ओपन नाव नीचे--

ओ आपने जो टीशर्ट पेहेन रखा है उसने ओरजन कलर का पेहेन रखा है उसने अपने एक हाथ में अंगूठी है उंगली में और एक कंगन भी पेहेन रखा हुआ है ओ कंप्यूटर पर--

खुर्ची नहीं खुर्ची भी दिखाई दे रही है सभी निचे वाली दिखाई दे रही है सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक बहोत ही मस्त शोरूम दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कांच ही कांच का ऐसा लग रहा बहोत सुन्दर डेकोरेशन भी बहोत अच्छा है टेबल कुर्सी बैठ ने के लिए सब कुछ बैठ न--

छोड़ते हैं बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं जब कोई नीचे का जमीन जो दिख रहा है वो कच्ची जमीन--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

अध् अँधेरा चल रहा है ऐसे रात का टाइम चल रहा है और ऊपर से लाइट भी जल रहा है और केबल पे तुबेलिघ्त भी जल रहा है ये दो आदमी भी दिखाई दे रहे है।

मुझे यहा पर एक स्टेचू नज़र आ रहा है इस स्टूडियो में एसा लगरा है जेसे कंप्यूटर का सिस्टम जो लगता है आधा आधा कंप्यूटर जेसे वे बर--

वन नंबर भी दिखाई देरा है नाइन फॉर वन डबल सिक्स नाइन डबल सिक्स फाइव सेवन ट्रिपल नाइन टू फॉर सिक्स फाइव टू डबल वन --

टेबल भी रखी हुई है बैठने के लिए और एक टेबल बीच में रखा हुआ है बड़ा सुंदर जा रहा है पेड़ पौधे भी बढ़िया बड़े मस--

लाइट का तार भी गया हुआ है। ऊपर और ऐसा लगा जैसे धूप का टाइम नहीं दिन का टाइम चल रहा है। धूप ही धूप ही निकली हुई एक औरत --

मुझे यहाँ पर एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जहा पर जय श्री अस्पताल का बोर्ड लगा हुआ है औ --

मुझे यहाँ पे टमाटर है टमाटर बहोत सारे दिखाई दे रहे है मस्त टमाटर लाल पिले है मस्त मोटे टमाटर और जो की संदूक में भरे हुए है ऐसा लग रहा है की कोई इन्हे गिन भी नहीं सकता--

का है मस्त कच्चे पक्के सभी तरीके के टमाटर लगे हुए कुछ उल्टे रखे हुए कुछ सीधे रखे हुए हैं।

जाली वाली सुन्दुक मे भरे हगे है और छोटे भी है कुल बड़े भी है एक दम मस्त ताज़ी तरीके के दिखाई देरे कोई सड़ा भूसा भी नज़र नही आ रहा है।